की ये चित्र किसी भीड़ भरे --

अक्सर ऐसी दुकानों में युवा --

जहां थकान होने पर चाय पी जा सकती है।

और साथ मे लोगों का आना-जाना भी जारी है।

की यह चित्र किसी रेलवे प्रतीक्षालय का चित्र है।

मेडिकल शॉप पर अक्सर खांसी जुखाम बुखार पेट दर्द और सामान्य बिमारियों की जो दवाइयाँ होती हैं।

सामने दिखाई देने वाले चित्र मे इंडियन ऑइल पेट्रोल पंप का लोगो दिखाई दे रहा है।

क्योंकि सामने से देखने पर ये पता नहीं चलता कि लोग किस --